नमस्कार loops in awk पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम awk में while dowhile for और अधिक looping constructs के बारे में सीखेंगे
हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे
इस tutorial के record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
आप अपनी पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको हमारी website पर पिछले awk tutorials को देखना चाहिए
आपको किसी भी programming भाषा जैसे c या c ++ के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया हमारी website पर समरूपी tutorials देखें
इस tutorial में उपयोगित files इस tutorial के पेज पर code files link में उपलब्ध हैं कृपया उन्हें डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
loop हमें एक या अधिक कार्य बारबार करने की अनुमति देता है
while dowhile और for awk में उपलब्ध loops हैं
while loop का syntax यहाँ देखा जा सकता है
while loop पहली जाँचता है कि क्या निर्दिष्ट condition true है
यदि हाँ तो यह code को body में निष्पादित करता है यह loop दोहराया जायेगा जब तक निर्दिष्ट while condition ट्रू है
हम उसी awkdemo txt फाइल का उपयोग करेंगे जिसे हमने पहले सेव किया था
मैंने while _ loop awk named script पहले ही लिखी है
वही file इस tutorial के code files link में उपलब्ध है
यहाँ हमने pipe symbol के रूप में field separator set किया है
आरंभ में हमें loop variable i की value 1 set करनी होगी
यहाँ हमने एक और variable f लिया है इसे 1 से शुरू किया है
variable f प्रत्येक record के लिए field counter या fields की पोजीशन का प्रतिनिधित्व करता है
अब while condition में हम जाँचते हैं कि i 3 से कम या बराबर है
यदि हाँ तो यह awkdemo txt फाइल में उस रिकॉर्ड के लिए fth फिल्ड में value print करेगा
फिर हम field counter f को 1 बढ़ायेंगे
उसके बाद हम loop variable i की value को भी 1 बढ़ायेंगे
यह printf प्रत्येक row के अंत में newline character printf करने के लिए है
यह loop awkdemo txt फाइल में सभी records के लिए निष्पादित होगा
जिसका अर्थ है कि पहले 3 fields सभी record के लिए printed होंगे
अब इस code को निष्पादित करते हैं
ctrl alt और t कीज दबाकर terminal खोलें
cd command का उपयोग करके उस folder पर जिसमें आपने code files downloaded और extracted की है
awk type करें: awk space hyphen small f space while _ loop awk space awkdemo txt
ध्यान दें कि हमें output में सभी rows के पहले तीन fields प्राप्त होते हैं
ऐसा ही dowhile loop के साथ करें
dowhile loop का syntax यहाँ देखा जा सकता है
dowhile loop हमेशा एक बार body में code को निष्पादित करता है
फिर यह निर्दिष्ट condition जाँचता है और जब तक निर्दिष्ट condition true होती है code को body में दोहराता है
मैंने पहले ही एक script लिखी है और इसे do _ loop awk named दिया है
इस code में ये do loop में statements हैं जो पहले निष्पादित होंगे यह condition है जो जाँची जायेगी
उसके बाद loop में statements बार बार निष्पादित होगी जब तक condition true है
यह loop awkdemo txt फाइल में सभी records के लिए पुनरावृत होगा जिसका अर्थ है सभी records के लिए पहले 3 फिल्ड्स प्रिंट होंगे
terminal पर जाएं terminal साफ करें
awk type करें: awk space hyphen small f space do underscore loop dot awk space awkdemo dot txt
हमें समान output मिलता है फिर हमारे पास दोनों while और dowhile loops क्यों हैं
अंतर समझते हैं
file while underscore loop dot awk पर जाएं
अब loop counter i की value 1 से 4 करें
यह शुरूआत से निर्दिष्ट condition false दर्शाता है जिसका अर्थ है हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए
file सेव करें और terminal पर जाएं
terminal साफ करें
अब enter दबाएं
देखें हमें खाली lines के अलावा कोई output नहीं मिल रहा है
awkdemo txt file में प्रत्येक record के लिए output में खाली lines printed हो रही हैं
अब do loop file में कुछ बदलाव करते हैं
file do underscore loop dot awk पर जाएं
i की value 1 से 4 करें
file सेव करें और terminal पर जाएं
terminal साफ करें अप ऐरो की दबाएं जब तक आपको do loop के लिए कमांड न मिल जाय एंटर दबाएं
output में पहले row के लिए केवल पहला field printed होता है क्या कारण है
प्रत्येक row के लिए awk पहले field में value prints करता है क्योंकि variable f की value 1 से इनीशिलाइज की जाती है फिर condition की जाँच की जाती है
चूँकि loop counter i की value 4 है तो condition false है इसलिए loop उस रिकॉर्ड के लिए वहीं समाप्त हो जाता है
यह loop awkdemo txt फाइल में सभी records के लिए पुनरावृत होगा
जिसका अर्थ है प्रत्येक record के लिए पहला field printed होगा
हमें प्रत्येक record के लिए कम से कम एक बार output प्राप्त हो रहा है
किसी any condition के बावजूद कमसेकम एक बार निष्पादित होने वाले कार्य के लिए dowhile loop का उपयोग करें
हम यह for loop के साथ भी कर सकते हैं
for loop के लिए syntax यहाँ देखा जा सकता है
for statement initialization निष्पादन द्वारा शुरू होता है
फिर जब तक condition true है तब तक वह बारबार statements को निष्पादित करता है और फिर वृद्धि करता है
c या c ++ जैसी भाषा के साथ आपको परिचित समझ कर मैं syntax को विस्तार में नहीं समझा रही हूँ
इस condition के लिए for loop इस तरह दिखता है
यहाँ initialization condition की जाँच और variable वृद्धि समान line में होती हैं
स्वतः इसका अभ्यास करें
यहाँ कुछ और looping constructs हैं
हम इन पर कुछ संबंधित उदाहरण आगे के tutorials में देखेंगे
हमारे पास हमारी file में single और multiline comments हो सकते हैं
यहाँ ध्यान दें कि single line comments single hash # single के साथ घोषित होते हैं
multiline comments double hash ## symbol की मदद से घोषित होते हैं
अब output में इन comments को जाँचने और प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है
हमें hash ## symbol से शुरूआत होने वाली lines को छोड़ना होगा
8000 रूपये से अधिक पाने वालों के लिए स्टाइपेंड में 50% वृद्धि देने के मामले को याद करें
हम comments को छोड़ने के लिए उसी उदाहरण का उपयोग करेंगे
मैंने इस निष्पादन के लिए next awk named file बनाई है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है
अब इस command का अर्थ क्या है
awk pattern के लिए खोजेगा जिसकी प्रत्येक line की शुरूआत में caret sign hash symbol ^# होगा
यदि pattern मिलता है तो कीवर्ड next awk को तुरंत वर्तमान line को छोड़ने के लिए कहता है
फिर awk फ़ाइल में अगली पंक्ति से प्रसंस्करण शुरू कर देगा यह प्रसंस्करण का समय बचाएगा
terminal पर जाएं और यहाँ दिखाए गए अनुसार command type करें और एंटर दबाएं
हमें बिना किसी comments के output मिलता है
मान लीजिए हमारे पास छात्रों के records समान format में कई files में हैं जैसे awkdemo _ mod txt और awkdemo2 txt
देखें यह हमारी पिछली file के समान है
इसमें hash symbol के आगे होने के साथ comments भी हैं
और इसमें and में double hash ##symbol के साथ काफी text है
अतः हमारा data दो भिन्न files में है
एक बार जब hash पहली file के double hash ## symbol पर पहुँच जाते हैं तो awk को उस file को पूर्ण रूप से processing करना बंद कर देना चाहिए
तो इसे अगली फ़ाइल से निष्पादन शुरू करना होगा
यहाँ दिखाए गए अनुसार next awk को संशोधित करें
मैंने begin statement के नीचे dollar zero tilde slash caret symbol double hash slash braces में nextfile semicolon जोड़ा है
यह प्रत्येक line की शुरूआत में double hash #symbol खोजेगा
यदि मिलता है तो awk अगली फाइल को process करने के लिए वर्तमान फाइल को छोड़ता है
इस file को सेव करें
terminal पर जाएं और निम्न command type करें एंटर दबाएं
देखें हमें दोनों files से output प्राप्त हो रहा है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने awk में while do… while for next nextfile के बारे में सीखा
नियतकार्य के रूप में awkdemo2 txt के छात्रों के records के लिए केवल सम fields print करें यानि field 2 field 4 आदि भले ही यहाँ input file में कितने भी fields हों
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और online tests पास करने पर प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या इस spoken tutorial में आपको कोई प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद